बोर्ड पर लाल अक्षरों से बेकरी का नाम लिखा हुआ है बेकरी पर एक सीसे का गेट चड़ा हुआ है।

जिसके अन्दर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए है और पीले रंग की कुर्सियाँ पड़ी है।

बिछी हुई है घास में कुछ पौधे नीले रंग के भी है स्कूल के बाहर कुछ बड़े बड़े पौधे है।

नीचे हरी घास है और एक रास्ता भी है चर्च के ऊपर तिकोना एक निसान भी लगा हुआ है।

और दीवार पर एक लाल रंग की आउटरिंग भी है और एक अध्यापक भी उनके पास खड़ीं है।